यहां पर चार कुर्सियां रखी है।

यहां पर छोटे छोटे पौधों की पुजा की जा रही है।

यह चित्र माता वैष्णोव देवी का है।

यह चित्र एक झरने का है।

यह बहोत बड़ा और सुंदर झरना है।

यहां पर बहोत हरियाली भी है।

यह चित्र बहोत सुंदर लग रहा है।

इस चित्र की किसी ने फोटो खींची है।